और एक दुकान वाला भी खड़ा है जोकि वो फ्रूट्स को बेचता है ।

बहुत सारी लाइटे यहाँ पे टंगी हुई है बल्ब टंगे हुए हैं ।

डांस करना सेहत के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है ।

कुछ पुरुष दिखाए गए हैं जो कि इस नदी में नहाने जा रहे हैं ।

जो कि लोगों को बातें करने के लिए सिम और फ़ोन प्रोवाइड कर --

इसमें पंडित जी बैठे हुए हैं जोकि पूरी कार्य विधि को संपन्न कर रहे हैं ।